सिलाई की मशीन रखी हुई है।

एक आदमी ने लिए रखा है।

पिछे इनके निले रंग का कपड़ा भी बेच रहा--

इसमें एक पन्नी में कुछ लाल और पीले कागज भी रखे--

यह फोटो किसी दुकान का है।

इसमें एक लाल रंग की छोटी कार भी दिख रही--

थोड़ा पीछे मिकी माउस भी दिख रहा--

इसमें हल्की घास भी दिख रही--

इसमें एक काली सड़क नजर आ रही है।

कुछ आदमी भी दिख रहे आ मट्टी का टिला भी है।

इस फोटो में एक आदमी खड़ा --

इस फोटो में एक लोहे का गेट दिख रहा--

शीशे का गेट है उसमें चश्मे भी छप रहे हैं।

पोस्टर भी लगा इसमें कार जेट वाश लिख रहा--

इसमें बराबर में दुकान भी दिख रही--

एक ढोल के उपर दूसरा ढोल रखा--

नीचे मट्टी भी दिख रही।

यहां बहुत सारी गाड़ी भी खड़ी हुई दिख रही है।

साइड में वॉच भी दिख रही--

फोटो में कुछ गाटर नीचे पड़े हुए है।

इसमें बल्ली भी दिख रही--

पुराली के सामने एक स्टैंड सा भी धरा हुआ दिख रहा--

उस आदमी के हाथ में पैलेवन का पाइप है।

इसमें झंडे भी लग रहे हैं।

इस फोटो में कुछ आदमी व औरत दिख रही--

वह लाल रंग की कुर्सी भी है और टेबल पर सफेद रंग का कपड़ा भी बिशा हुआ है।

और इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और एक खंभा भी दिखाई दे रहा है जिस पे कुछ तार लगे हुए हैं औ--

यह फोटो किसी मार्केट का लगा रहा है।

और इसमें एक ढोला भी बंधा हुआ है और इसमें कुछ तार भी दिखाई दे रहे हैं।

में एक डंडी भी दिख रही है एक डंडी का फोटो भी छप रहा--

और निच्चा हरे रंग भी हो रहा और बीच में कुछ सामान पड़ा हुआ --

और एक स्कूटी पर आदमी कान के फोन लगा हुआ बैठा हुआ है और--

यह फोटो किसी क्लिनिक का लग रहा है।

लकड़ी का गेट भी लगा हुआ है।

एक लैपटॉप भी रखा हुआ है।

उसमें एक जग भी दिख रहा।

पीच्छे सड़क भी दिख रही और सड़क के बीच की भी दिख रही --

पीछे बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं इसमें एक बाइक भी दिख रही है खड़ी हुई।

ये फोटो किसी शादी फंक्शन का लग रहा।

यहां बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

कुर्सी दिख रही इसमें एक स्टेज भी दिख रही--

और इसमें बहुत सारी क्रेट भी रखी हुई हैं।

और इसमें लकड़ी के बॉक्स भी बने हुए हैं।

भैया सेंटर लिखा हुआ है और इस पर नंबर भी लिखा हुआ है।

और साइड में एक और दुकान--

धीमा आसमान भी दिख रहा--

और पीछे बिल्डिंग भी दिख रही है।

गुलशन में कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है।

और इसमें कुछ सामान भी फैला हुआ है।

नीले रंग का पाइप भी है।